सभी एंटीक सामानों को ताखे बना करके रखा गया हैं।

तैयत चार तल्ले की बनी हुई है सामने एक व्यक्ति है जिसने गे--

और यहाँ पे कुछ लाइटे जो की यहाँ पर कुछ जलती हुई नज़र आ रही है।

सामने एक डेस्क है जिसके ऊपर में कुछ किताबे बगैरा रखी हुई नजर आ रही है।

सामने दो तगाड़ी रखी हुई दिखाई दे रही है जिसमे कुछ समान रखी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक बड़ा सा कैबिन वगैरा कुछ देखा जा सकता है यह कोई ऑफिस लग रहा है।

जिसमे से कुछ सिमेन्ट वगैरा ज्यादा निचे न गिरे इसके लिए कुछ प्लास्टिक भी लगाई गयी है।

और यह देखने में सुंदर --

पीछे की तरफ में कुछ सफ़ेद रंग की लाइटें जलती हुई नज़र आ रही है ।

यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रैम्पोलिन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमे से पानी का फव्वारा निकलता हुआ साफ़ देख जा सकता है।

यहाँ पर दो शार्क मछली को देखा जा सकता है जिनको एक ठेले के ऊपर लाद कर के लेके जाया जा रहा हैं।

और बोहत सारे लोग इस शार्क मछली को ही देखे जास रहे हैं।

ट्रेक्टर को चलाने वाले व्यक्ति ने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी है अगल बगल भी बहुत सारे लोग --